अंदर पहने वाले कपड़े मिलते हैं गिफ्ट आइटम मिलते हैं इत्यादि भी मिलते हैं जो सभी अवेलेबल हैं यहां पर मोबाईल नंबर भी दिया गया है जो मे--

जूनियर ब्लॉक सीनियर ब्लॉक कॉन्फ्रेंस रूम इत्यादि लिखा हुआ हैं।

किसी बेडरूम का यह दृश्य दिखाई दे रहा है जिस प्रकार का बेडरूम अक्सर हम लोग होटलों में कमरों में देखते हैं।

ये कपड़े की दुकान का यह दृश्य दिखाई दे रहे कपड़े की दुकान के अंदर--

यहां पर बैठकर लोक संस्कृति कार्यक्रम का लुफ्त उठाएंगे और खाने-पीने का काम करेंगे इस तरह का दृश्य यहां पर दिखाई --